पहना हुआ एक आदमी खडा है एक लेफ्ट साइड में एक पीला रंग का टी शर्ट पहने हुए ब्लू जीन्स पहने हुए एक में लाल टी शर्ट पहन के गमछा पहना हुआ है।

बैगनी कलर का टी शर्ट एंड ब्लैक कलर का पेंट पहना जिसमे एक हाथ में मोबाइल है ब्लैक कलर का एंड पीछे एक बल्ब है।